छाजे को कई कलरो से और इस बिल्डिंग को भी इस किले को भी कई कलरो से कलर किया गया है जिसमे गुलाबी पीला बहुत सारे हैं और इसमें --

पुराने ईटों का प्रयोग किया गया है जिसे चिमनियों पर पकाया जाता है।

यह एक शादी के लॉन का दृश्य है।

पोशाक का कलर सफेद और गुलाबी है।

जिसका नाम टाटा मोटरस है और उसके बगल मे एक मारुती नंदन कार एजेंसी शोरूम है।

और उसमे बहुत से कलर का प्रयोग किया गया है इनमे कई मीनारों का प्रयोग किया गया है और कुछ लोग टोपी लगाए हुए है कुछ लोग हैट लगाए हुए है।

कुछ लोग मोमिनों का टोपी लागए हुए हैं जो देखने मे बहुत ही सुन्दर और भव्य दिखाई दे रहा है।

ऊपर का टीशर्ट का कलर सफेद है वो नीचे हाफ पैंट पहना हुआ है जिसका कलर काई है ऊपर तीन चार लोग चढ़ चुके हैं। बगल में एक पेड़ --

बिल्डिंग का कलर सफ़ेद है और बिल्डिंग के चारी चारो तरफ चार दीवारी का यूज़ किया गया है जैसे लगता है की यह एक कॉलोनी है और इसमें --

यह किसी सेमिनार का --

ये एक टाउन एरिया का दृश्य है। जहाँ पर किसी मकान निर्माण का --

यह किसी जनरल स्टोर का दृश्य है जिसके जनरल स्टोर के सामने एक काउंटर लगाया गया है।

कपड़े की दुकान का दृश्य है।